ई स्मार्टफोन नेटवर्क महावीर इलेक्ट्रॉनिकाल लिखा हु --

पार्कर्स जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सामान रखी हुई है और सामने मेको--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं नाव के ऊपर दो झंडे लगे हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां टेबल के ऊपर बहुत सारे गिलास टिशु और तरह-तरह की चीजें रखी गई है जैसे के--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

यहाँ पर खिड़की बनी हुई है खिड़की का रंग नीला रंग का है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर टंगे हुए हैं--

लोग खड़ा हैं जो हाथ में बास पकडा हुआ हैं और वो काला रंग का शर्ट और एक लुंगी पहना हुआ हैं।

चिनहो पार्क जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस पार्क के बाहर में के ठेले है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस पार्क के बाहर बहुत --

यहां पे बहोत सारे हरे भरे घास और हर भरे पेड़ पौधे है जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

फ्रिज रखे हुए है जैसे कि मैं देख पा रही इस दुकान में बहोत सारी आदमी हैं जो समान ले रहे जैसे कि मैं देख पा रही हूँ।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह बाइक की शोरूम है जैसे कि मैं देख पा ड़ही हूं यहां पर बहुत सारी बाइक लगी हुई है जैसे कि मैं दे--

यह एक चर्च है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ऊपर में जीसस क्राइस्ट की पिक्चर लगी हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं सामने में एक लड़का है जैसा कि मैं देख पा रही हूं लड़का ने गले में एक मफ़लर लिया हुआ है जैसा कि मैं देख पा रही हूं --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर नारियल के पेड़ हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ सामेन में एक--

इस दिवार पे एक लिखा हुआ हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक फेशवॉश रखी हुई है जिसका नाम है गोल्ड पल्स और वो गोल्डेन रंग का है और वो डब्बे के अंदर भरा हुआ है ज--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे है जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस मंदिर के ऊपर बहुत सारे झंडे टंगे हुए हैं जैसा कि --

नीचे में बहुत सारे डट बिछाये गए हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस जीन्‍स का रंग बहुत कलर का है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर रंग नीला रंग का है और काले --

नीचे शतरंज बिछाया गया है जिसका रंग लाल--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक बहुत बड़ी-सी दुकान है झालर की दुकान जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारी त--

सब रंग के झालर रखे हुए हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ नीचे में बोहोत सारे प्रिंटर है।

इसमें बहोत सारे डिजाइन बने हुए हैं तिकोने सा डिजाइन है जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

लोग बैठा हुआ है जैसे कि मैं देख पा रही यहां पे बहोत सारी चारपाई रखी हुई है जिसका रंग हरा नीला--